एक आदमी है जो बैग लेकर आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर मैं सामने मे एक रेड कलर का बस देख पा रही हूँ।

स्टैंड का फोटो है। यहां पर दो बस देख पा रही हूं एक सादा और एक रेड है। यहां पर बस के ऊपर लिखा हुआ है साथी ट्रैवल और पीछे में जो है वह है हंस सफारी ।

मै बड़ा सा मैदान देख प रही हु सामने कुछ पेड़ है छोटा-छोटा घास इसमे दूर मे एक ब्रिज देख पा रही हु जो की बहुत ही बड़ा ब्रिज है।

फोटो हैं| रास्ते में सामने से एक वाइट कलर का बस जो हैं आ रहा है और पीछे में एक मालगाड़ी आ रही है| उसमे बहुत सारा बस्ता देख पा रही हूँ और यहाँ पीछे मोटर बाइक भी आ रही हैं जो दू काफी दूर मे हैं।

और यहां पर आ मैदान भी है। बाये साइड में पानी में गंदा कचरा है।

सामने एक बड़ा सा मूर्ति देख पा रही हूं। या मूर्ति अ-ए लुंगी और बड़ा सा एक पंजाबी पहन के है और लुंगी--

और यहाँ पर एक सर पे पगड़ी पहना हुआ है और हाथ आ नमस्ते करके खड़ा हुआ है। और इसके अगल-बगल बहुत सारा पेड़ देख पा रहे हैं।

इस बस में स्काई ब्लू कलर किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। यहाँ की बस बिहार जाता है और यहाँ पर लग रहा है ये एक गाड़ी पार्क करने की जगह --

एक बड़ा सा रास्ता देख पा रही हु। इस बड़े से रास्ते मै एक बस जा रही है ब्लू कलर की।

यहाँ पर सारा नया नया बस व्हाईट ब्लू कलर की बस देख रही हुं। उसके बाद मै एक बड़ा सा ब्रिज दिख रही हुं।